यह एक गाड़ियों की दुकान है इसमें कई सारे ऑटो रखे हुए हैं।

यहाँ आस-पास कई सारे पेड़-पौधे भी लगे हुए है यहाँ एक टॉवर भी लगा हुआ है आस-पास कुछ पेड़ घर भी है।

यहाँ पर गेट भी लगे हुए है और यहाँ एक गाड़ी भी खड़ी हुई है यहाँ कुछ साइकल्स भी है यहाँ लाइट के तार --